और दो तीन आदमी बेठकर उसे देख रहे हैं। ये आदमी कुछ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगल बगल लोहे का कुछ समान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ी सी स्कूल दिखाई दे रही है जो की तीन चार मंजिला बिल्डिंग में बनी हुई है यह बिल्डिंग दो भागों में बटी हुई है ।

यहां पर एक दुकान के अंदर एक छोटा सा स्नैप बार दिखाई दे रहा है जिसके बाहर दो लोग खड़े हुए है इस दुकान के अंदर कई सारा समान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और बाहर एक ब्लू कलर की बकेट भी रखी हुई है।

इस जगह के अंदर भी काफी भीड़ जमा है दिख रही है इस जगह के बाहर दिवाल में क्रॉस का साइन बना हुआ है।

जगह दिख रही हैं जहां पर एक आदमी एक कुर्सी मे बैठ कर टेबल पर अ कुछ पर्ची लिख रहा है और ट टेबल मे कई सारी दवाइयां भी रखी हुई हैं यहां पर कई सारे लोग उसे घेर कर बैठे हुए है और कुछ पर्ची लिखवा रहे हैं।

पर एक सैलून अंदर के फोटो दिख रहा है जिसमें एक लड़का हेयरकट कराता हुआ दिख रहा है।